यहाँ पर एक बुफ्फे सिस्टम रखा गया है जो की यहाँ पर कोई भी कार्यकर्म हुआ होगा इसीलिए यहाँ पर बुफ्फे सिस्टम है।

सारा समान मिल रहा हैं यहाँ पर बहोत सारी डिबिया हैं हरी-हरी नीली सफेद का ब्लैक का सारी ब्रांडेड चीजे मिल रही हैं यहाँ पर और बहोत ही डिजाइन मे--

और बहोत ही कुर्सी रखी हुई है और वहाँ पर कुछ रखा हुआ है जोकि साफ से दिखाई दिया नहीं जा रहा है और बहोत ही डिजाइनर रूप से बना हुआ है बहोत ही अच्छा लग रहा है।